चित्र में हम देख सकते हैं कि यह ए.टी.एम. मशीन है जहां पर एस.बी.आई. लिखा हुआ है योनो बैंक यूनो मतलब आज-अ नया ऐप ओपन हुआ है बैंक के द्वारा जहां पर सारी जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है कहां कितने पैसे गए--

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन लोग मौजूद हैं जो की ईंटें उठने दिखाई दे रहे हैं और राशियों के द्वारा। और हमें यह दिखाई देता है कि यहाँ पर घर--

जो लोगो को इधर से लेकर उनके घर तक पहुचाने का काम करती है और कई सारे लोग भी जाते है।

ईस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह एक सरकारी आ आस्पाताल या ऑफिस दिखाई देती है जहां पर रिसेप्शन में हमें एक आदमी बैठा औ पूछता दिखाई दे रहा है।

ताके वह संतुष्टि से यहां पर आ खुशि मना सके और हम देख सकते हैं कि यहां पर कई सारे लोग आए हुए हैं कुर्सियों में बैठे हुए हैं और बाहार भी आ सारा माहौल भरा पड़ा है।

और शिकारी और कई सारी चीजें आज आ रही है जिसके कारण महिलाओं को और बच्चों को लड़कियों को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए।